ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इस प्रकार बल्लीयां लगी हुइ हैं। यहाँ पर हमें एक मॉल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं मिलती हैं और यहाँ काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहाँ पर हमें काफी सारे खम्भे भी दिखाई दे रहे हैंजैसे की आप देख सकते है हम यहाँ पर नीचे की तरफ पार्किंग सी भी लग रही है।

जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर हमें एक बोहोत सुंदर द्रश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है| इसमें घास उगी हुए हैं। यहाँ पर हमें काफी सारा बड़े बड़े पत्थर और पानी भी पड़ा हुए दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पर हमें पीछे की तरफ काफी सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक पैलेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाहर बहुत सुंदर सजाया गया है।

यहां पर जो देख सकते हैं यह एक फूलो की माला की दुकान है। यहां पर काफी सरे फूलो की मालाऐ पन्नी मे भी पैक हुईं हैं और काफी सरे वास भी है।